एक कार्पेट पर डांस करता हुआ दिख रहा है उसने काफी ज्वेलरी पेहनी हुई है।

और तीन चार कुर्सियां दिखाई दे रही हैं एक शेड डाला हुआ है यहां पर एक कुर्सी--

साथ ही ए_सी लगे हुए हैं और दो दरख़्त बड़े बड़े लगे हुए हैं और साथ में एक स्टील का गेट भी बना हुआ है।

सामने देख रे होंगे बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

टावर देखाई दे रहा है बिल्डिंग के ऊपर एल_ई_डी लैटे लगे लगी हुई दिखाई दे रही है एक साइकिल दिखाई दे रहा--